चित्र में एक सालों दिख रहा है एक आदमी एक आदमी का बाल काट रहा है एक लड़का फोन चला रहा है बैठकर सामने एक पानी का जार रखा हुआ है।

ऊपर जाने के लिए साँढ़िया भी दी गई है आसमान भी दिया गया है।